खेती खेत का भी सीन है जो अभी सुखा हुआ है। इसमें उ उ नदी है उसमें पानी भी है।

जिसको चढ़ने वाला भाग हरा रंग के है और ससरने वाला भाग पीला रंग के है। कुछ पेड़-पौधे भी हैं। यह पार्क चारों तरफ से घेरा हुआ है।